दुकान है यहां कुछ बाल्टियां--

मैं देख पा रही हूं।

यहां एक पेड़ दिख रहा हैं।

मैं देख पा रही हूं।

मैं देख पा रही हूं।